यहाँ पे यहाँ हमें एक बैंक दिखाई दे रही है और यहाँ इसको इसमें हम रोज पैसे लेने के लिए और देने के लिए भी जाते हैं। निकालने के लिए डालने के लिए जाते हैं जरुरत पे पैसे --